यहां पर बड़ा सा महल है कुछ पुराना जैसा और आसपास पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

आसपास मकान भी देख रखा देख रहा है।

यहाँ पे बच्चों पीछे लिख रखे लिख रहे है।

कुछ बच्चे इधर उधर देख रहे हैं।

कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पर।

यहां पर कोई नहीं देट रहा है कुर्सी टेबल लगा हुआ है।

कुछ आस पास केले का पेड़ भी दिख रहा है कुछ सुखा लकड़ी देख रहे हैं।

आस-पास पेड़ दिख रहे है कुछ जाली का कुछ खेत दिख रहा है यहां पे जैसे --

पीछे लाईट चालू भी मकान बहोत बड़ा दिख रहा है।

जैसे कि मुर्गी को हर मुर्गी को कौन रखे हैं यहाँ --

पीछे फूटबॉल जैसा दिख रहा है कुछ तिरपाल रखा है।

यहां पे तालाब है पानी दिख रहा है या अच्छे से छोटे बड़े पोहदे लगा हुआ है।

यहां पे कुछ लाइट चला रहे हैं पंखा चल रहा है लाइट चल रही है।

आइड साइड बांध रखे हैं यहाँ पे कुछ घर दिख रहे गार्डन है यहाँ पे।

एक गाड़ी को ऊपर टांग रहे हैं और टायरों उनको देख रहे--

यहां पे कुछ काम जैसा चलता है ऑफिस है यहां पे सर्विस लाइन की--

सामाने बेच रहे हैं यहां पे कुछ--